क्रिएटिंग आ जावा वेब प्रोजेक्ट के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न सीखेंगे जावा वेब प्रोजेक्ट बनाना डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर के बारे में webएक्सएमएल फाइल के बारे में
यहाँ मैं उपयोग कर रहा हूँ उबन्टु वर्जन 1204 नेटबीन्स इडे 73 जेडीके 17 फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र 210 आप अपनी पसंद का कोई भी वेब ब्राउज़र उपयोग कर सकते हैं
इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको निम्न के साथ परिचित होना चाहिए नेटबीन्स इडे उपयोग करके कोर जावा और एचटीएमएल यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ
अब देखें नेटबीन्स इडे उपयोग करके सरल जावा वेब प्रोजेक्ट कैसे बनायें
इसके लिए हम नेटबीन्स इडे खोलेंगे
इडे के ऊपर बाएं कोने पर फाइल पर क्लिक करें और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करें
न्यू प्रोजेक्ट विंडो खुलती है
कैटेगरीज़ से जावा वेब चुनें और प्रोजेक्ट्स से वेब एप्लिकेशन चुनें
फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें
अगली विंडो जो खुलती है उसपर प्रोजेक्ट नामे में माइफर्स्टप्रोजेक्ट टाइप करें
प्रोजेक्ट लोकेशन और प्रोजेक्ट फोल्डर को ऐसा ही छोड़ दें
फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें
सर्वर में ग्लासफिश सर्वर सलेक्ट करें
ध्यान दें कि कांटेक्स्ट पथ में यहाँ माइफर्स्टप्रोजेक्ट है यह हमारे प्रोजेक्ट के समान ही है
हम इसके बारे में विस्तार से सीखेंगे
अब नेक्स्ट पर क्लिक करें और फिर फिनिश पर क्लिक करें
प्रोजेक्ट्स टैब पर क्लिक करें हम देख सकते हैं कि यहाँ अनेक नोड्स हैं और माय फर्स्ट प्रोजेक्ट नामक वेब एप्लीकेशन बनाई गयी है
अभी हम इन सभी नोड्स के बारे में संबद्ध नहीं हैं
लेकिन मैं इस पर क्लिक करता हूँ और दिखाता हूँ कि इसमें क्या है
अब हम डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर के बारे में सीखते हैं
वेब एप्लीकेशन का डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर निम्न का वर्णन करता है एप्लीकेशन की क्लासेज़ रिसोर्सेज़ और कॉन्फ़िग्रेशन और वेब सर्वर वेब अनुरोधों को सर्व करने के लिए उन्हें कैसे उपयोग करता है वेब सर्वर एप्लीकेशन के लिए अनुरोध स्वीकार करता है
अनुरोध के उर्ल को मैप करने के लिए यह डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर का उपयोग करता है
यह उर्ल को कोड तक मैप करता है जिसे अनुरोध का संचलन करना है
डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर webएक्सएमएल नामक एक फाइल है
अब वापस इडे पर आते हैं
हम यहाँ उपलब्ध नोड्स से webएक्सएमएल फाइल को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं
इडे के सबसे ऊपर बायीं तरफ इसको स्थित करने के लिए फाइल पर क्लिक करें और फिर न्यू फाइल पर क्लिक करें
कैटेगरीज़ से वेब चुनें
और फाइल टाइप से स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट Descriptorwebएक्सएमएल चुनें
फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें
और फिनिश पर क्लिक करें
इडे के बायीं तरफ फाइल्स टैब पर क्लिक करें
ध्यान दें कि webएक्सएमएल वेब नोड के web आईएनफ फोल्डर में दिखता है
आप अब सोर्स कोड देख सकते हैं
यहाँ हमारे पास एक्सएमएल हेडर है
हमारे पास web अप्प नोड भी है
अब हम एप्लीकेशन रन करने की कोशिश करेंगे
ऐसा करने के लिए माइफर्स्टप्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करें
क्लीन एंड बिल्ड पर क्लिक करें
यह किसी भी पहले कम्पाइल की हुई फाइल को और अन्य बने आउटपुट्स को मिटा देगा
यह एप्लीकेशन को दोबारा कम्पाइल भी करेगा
फिर से माइफर्स्टप्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करें और फिर रुन पर क्लिक करें
सर्वर सही चल रहा है और इसने माय फर्स्ट प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर दिया है
ब्राउज़र विंडो खुलती है और हेलो वर्ल्ड दिखता है
यह इसलिए है क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट रन करते हैं तो वेब एप्लीकेशन दिखाया हुआ पेज प्रस्तुत करती है
अब यहाँ उर्ल को देखते हैं जिसने पेज प्रस्तुत किया
यह लोकलहोस्ट कोलन 8080 स्लैश माइफर्स्टप्रोजेक्ट है
बाई डिफ़ॉल्ट जब हम माइफर्स्टप्रोजेक्ट को रन करते हैं तो हमें जेएसपी पेज मिलता है जो कहता है हेलो वर्ल्ड अब हम वापस हमारे इडे पर आते हैं
हम देख सकते हैं कि web आईएनफ फोल्डर के अंदर यहाँ इंडेक्स डॉट जेएसपी है
indexजेएसपी पर डबल क्लिक करें
हम यहाँ सोर्स कोड देख सकते हैं
यह सिर्फ एचटीएमएल टैग्स के साथ एक सामान्य जेएसपी पेज है
इसका टाइटल जेएसपी पेज है और इसका शीर्षक हेलो वर्ल्ड है
जब हम वेब एप्लीकेशन रन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट से सर्वर indexजेएसपी देता है
याद करें कि हमने पहले भी कॉन्टेक्स्टपथ नामक कुछ देखा था
हमने कॉन्टेक्स्टपथ को माइफर्स्टप्रोजेक्ट की तरह सेट किया था
अब अपने ब्राउज़र पर वापस आते हैं
उर्ल को लोकलहोस्ट कॉलन 8080 टाइप करें और एंटर दबाएं
हम देखते हैं कि ग्लासफिश सर्वर का होम पेज प्रदर्शित होता है
यहाँ 8080 डिफ़ॉल्ट कोर्स है जिस पर सर्वर मशीन पर रन करता है
यह ग्लासफिश सर्वर इंस्टैंस इस पर रन होने वाली बहुत सी एप्लीकेशन्स रख सकता है
एक विशेष एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए उस एप्लीकेशन का नाम उर्ल में लिखें
अतः हमें उस विशिष्ट एप्लीकेशन को टाइप करना ज़रूरी है जो उस इंस्टैंस पर डिप्लॉय की गयी है
अतः हम टाइप करेंगे स्लैश माइफर्स्टप्रोजेक्ट और एंटर दबाएं
हम देखते हैं हेलो वर्ल्ड प्रदर्शित हुआ है
इसको सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा एक सरल जावा वेब प्रोजेक्ट बनाना वेब प्रोजेक्ट को निष्पादित करना और वेब xml फाइल के बारे में
इस स्पोकन ट्यूटोरियल के बारे में अधिक जानने के लिए निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें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
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है
ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं
अधिक जानकारी के लिए कृपया कॉन्टैक्ट एटी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी को लिखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी httpspoken tutorialorgNMEICT इंट्रो पर उपलब्ध है
लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम अग्रणी सॉफ्टवेयर मन्क के कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी कार्यक्रम के अंतर्गत योगदान दिया गया है
इस स्पोकन ट्यूटोरियल के लिए उन्होंने इस विषय वस्तु की पुष्टि भी की है
मैं यश वोरा आपसे विदा लेता हूँहमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद